यह एक सड़क का मार्ग है सड़क के पास दो तीन बोर्ड लगे हैं बोर्ड के आसपास ही अ- बहोत सारे स्टॉपर्स लगे हैं।

यहाँ एक खाली सड़क है खाली सड़क के आर पार पार्क है पार्क मे काफी लायनबद्ध --

यह एक सफेद रंग की मंदिर की चोटी दिख रही है चोटी के ऊपर एक झंडा भी है।

मंदिर के नीचे काफी अ मुख्य द्वार हैं। उसके पास मे ही एक गोलाई मे काफी कारीगरी की गई----

और उनमें क्यूबिकल से पार्टीशन हो रहा है और यहाँ कोई भी नहीं है उम कमरे का दरवाजा हरा रंग का है।

यह एक तलाब का दृश्य है तलाब के आस-पास लोगो के चलने की जगह बनाई हुई है उसके आस-पास एक टंकी है ।

वहाँ पे एक टे आ काफी कूलर रखें गए हैं बाहर भी एक कूलर लगाया गया है फर्श अ लाल रंग की है।

ये एक नदी के आर-पार का दृश्य है वहाँ पे आस-पास काफी पेड़-पौधे हैं।

एक आदमी है और आ- पुलिस- आ- बोर्ड का भी साइन लगाया हुआ है।

बिल्डिंग सफ़ेद रंग की है बिल्डिंग के बाहर बिजली का खंभा है बिल्डिंग के बाहर दो-तीन साइकिल और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यह एक महाविद्यालय चिकित्सालय अ की बिल्डिंग है।

और वहाँ अ बहुत सारी विंडोज़ हैं और कुछ बजरी भी पड़ी है।

यह एक मार्केट का व्यू है मार्केट के-- आ यहा काफी दुकानें हैं।

दुकानों के ऊपर काफी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और यहा काफी लोग दिख रहे हैं।